इस फोटो में मुझे मिठाइयों कि दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे झूमर दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे रुम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बाइक ऑटो साइकिलें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे खेत दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लाइटें दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे सैडून की दुकान दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ढाबा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे--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

इस फोटो में मुझे बरात दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे--

इस फोटो में मुझे बहोत सारी मिठाइयां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे काउंटर दिखाइ दे रहा है।